यह एक रोड है इस साइड कच्ची रोड लग रही है इधर नदी है या तालाब है पर एक आदमी ठेला लेकर इधर आ रहा है| इधर बहुत सारी बाइक लगी हुई है।

सरकारी अफ कुछ बैंक लग रहे हैं देखने से | ये बैंक दो मंजिले हैं इसके बगल में एक पेड़ है आम का उस साइड नारियल का पेड़ है।

इसका पेंट व्हाइट कलर का है| यहाँ पे पंखा लगा हुआ है सब माला पहने हुए हैं कोई ढोल बजा रहे हैं कोई गा रहे हैं।

एक आदमी है इस साइड ऑरेंज कलर का शर्ट इधर जो हंस रहा है| यह व्हाइट कलर के शर्ट की तरफ बाइक - वाइक लगे बहुत सारे आदमी है वो जो खरीद रहे हैं।

बहुत बड़े से बिल्डिंग है इसका कलर ब्लू व्हाइट दोनों मिक्स है| पीछे पेड़ है बहुत बड़ा-सा पेड़ है| यह बहुत बड़ा-सा बिल्डिंग है।